और एक लड़का है उन सभी ने ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ है लड़की ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है |

झूला है बैठने के लिए उम्म बैठने वाला है।

ये बाहर का सीन है जिस का बहुत बड़ा गेट है | उसका कलर ब्लैक है | वाल का कलर भी वाइट है |

म्म एक दो तीन चार पांच-पांच बिल्डिंग है।

एक खुला हुआ है बाकी तीन बंद है जो खुला हुआ है उसमें टायर है।

बाहर स्कूटी है उसके बगल में टेबुल है ढेर सारा प्लेट है कार्टून है।

इधर दो घर है एक डस्टबिन दिख रहा है एक तुलसी चौराहा भी दिख रहा है रोड बड़ा साफ-सुथरा है लेकिन इधर का --

अम्म छोटे छोटे भी पौधे है एक टोपी पहनले है उसके बाद शर्ट पहनले हैं लेकिन इसका अधिक --

इ यहाँ नाइनटी नाइन रूपीज लिखा हुआ है।

और ढेर सारा लाइट लगा हुआ है ऊपर।

सीढ़ी लगभग एक दो तीन चार पांच छः सात सीढ़ी है।

ऊपर दो खूटे है जो कि बहुत अच्छे है अंदर एक व्हाइट कलर का हमको रौशनी दिख रहा।

एक ने पीला पहना है दूसरे ने भी पीला पहना है तीसरे ने भी पीला पहना है लेकिन चौथे ने लाल पहना है इन सब ने शॉर्ट्स पहना हुआ है।

सर्किल में से सर्कल में जाना है इसमें एक भैया है एक बच्ची है एक छोटा बच्चा --

बाल तो बड़ा अच्छा बांध ली लेकिन इसका दांत दिख रहा है बिंदी बड़ा ऊपर साटले है।

और हॉस्पिटल ब्लू कलर का है होंडा मेरे पास भी है गाड़ी।

बंद है और बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ।